यहां पर एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है फैक्ट्री में बहोत सारी मशीने भी दिखाई दे रही है।

यहां पर तीनों की साइड भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर दो येलो कलर की बिल्डिंग है यहां पर बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

खिड़कियों में शीसे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी फूलों से सजाई हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहे हैं।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

मेरे सामने एक जिम दिखाई दे रही यहां पर बहुत सारी मशीने भी रखी हुई दिखाई दे रही--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

यहां पर मैच भी दिखाई दे रही है।

यहां पर शैंपू का कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक किरयाने की शॉप दिखाई दे रही है जिस पे बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर रनिंग मशीन भी दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक झील दिखाई दे रही है।

यहां पर एक गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है इनका कलर वाइट कलर का दिख--

मेरे सामने चित्र दिखाई दे रही है।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

यहां पर बहोत सारी बाल्टिया भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

व्हाईट कलर की दिखाई दे रही हैं। यहां पर कुछ पेटियां भी--